यहाँ रोड के किनारे बहुत सारी कस्तियाँ दिखाई दे रहीं हैं।

हरे भरे किनारों पर पेड़ हैं कुछ बने हुए दिखाई ये दे रहे हैं हरे भरे दिखाई --

इसमें में यहाँ है एक अ नदी बहोत लंबी चौड़ी जल भरा दिखाई दे रहा है ऊपर ब्रिज दिखाई दे रहा है।